लग रहे हैं हरी-हरी पत्तियां दिख रही है गार्डन बना हुआ है और --

बोर्ड के ऊपर एरो लिखा हुआ है और एड्रेस भी लिखा हुआ है नंबर लिखे हुए हैं।

साम सभी ने मास्क पहने हुए हैं दिन का समय है।

भी लग रहा है और सुंदर--

एक सामने पानी की टंकी दिख रही है।

सजाया हुआ है और बहोत ही सुंदर लग रहा है और--

अच्छी और बड़ी दुकान है जिसपे बहुत सारा सामान--

ये एक बहोत ही बड़ी यहां पे टेबल रखी हुई है और बहोत ही अच्छे से--

और बहोत ही ज्यादा लाइट्स के साथ सजाया हुआ है और बहोत ही सुंदर--

ये एक बच्चों की डांस क्लास है जिसमें बच्चों को डांस सिखाया जा रहा है बहुत सारे बच्चे यहां पे --

ये एक बहोत बड़ी जिम है जिम में बहोत सारी मशीने रखी हुई है और--

दिख रहा है और यह जो गाड़ियां है गली में लगाई गई है और अच्छी लग रही--